इस चित्र मैं एक स्टेज दिखाई दे रहा है उस पर एक क_कन्या कार्यक्रम क- नृत्य करती--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

इसमे अभी कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा मंदिर का दिया दिख रहा है।

दो-तीन व्यक्ति बैठे हुए दिख रहे है एक व्यक्ति मास्क लगाए एक व्यक्ति टोपी और फोन पर बात कर रहा है आस-पास वॉटर कूलर रखे नज़र आ रहे है।